यहां पे हमें कुछ तलाब जैसा दिख रहा है बहुत दूर में यहां पे मिट्टिया भी रखी हुई है।

और एक पतला सड़क गया हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पे कुछ पोस्टर भी टंगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे हमे एक मंदिर दिखाई दे रहा है और यहां पे दो मूर्तियां लगी हुई है और यहां पर लोहा के गेटस से लगे हुए --

यहां पर हमें ए एक घर टाइप से दिखाई दे रहा है यहां पर पोस्टर टंगा हुआ नजर आ रहा है वहां पे करके लिखा हुआ है।

करके कुछ लिखा हुआ है यहां पर जैकेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर लाइटस लगी हुई है और दूर --

आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वहां पे लाइटस लगी हुई दिखाई दे रही है और मरक्युरिया भी लगी हुई है।